यहाँ पे लग रहा है उदघाटन जैसा है।

सामने का उसके बाद दिखाई दे रहा है बहुत सारे कुर्सियां लगे हैं।

इसमें आदमी भी दिख रही है।

इसमें कैमरा लगा हुआ है।

ये एक कपड़ा का दुकान है।

बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

एक जेंट्स भी खड़ा है।

इसमें ऐसे ही रखा हुआ है।

यहां पे दिख रहा है एक गली।

बिस्किट का पैकेट दिख रहा है।

यहां पे एक कैंटिन का लगा हुआ है।

ये दो आदमी बैठे हैं एक--

यहां पे नदी दिख रही है बादल है।

पेड़ पौधा लगा हुआ है।

स्कूल का पंडाल जैसा दिख रहा है उसमें बहोत सारे पर्दे लगा हुआ है।

इसमें बहुत बड़ी पोस्टर लगा हुआ है।